ये चेयर दिख रहीं हैं हरी हरी घास दिख रही है लाइट से लेती हुई दिख रही हैं। बिच में बैठने के लिए स्टेज दिख रहा है और --

एंट्रेंस दिख रही है सीढ़ियाँ दिख रहीं हैं औरतें बैठीं हैं कुछ लोग खड़े हैं ब --